यहाँ पर कितना अच्छा जगह है यहाँ बहुत ही एक अच्छा जगह--

आप देख सकते है यह कार-उर कुछ बोलोरो -वोलोरो बहुत सारा खड़ा है यहाँ पर देख सकते है छोटा हाथी भी खड़ा है यहाँ पर घर -उर भी है यहाँ पर की आप जानते है यहाँ पर बहुत ही सुंदर --